साइलैब में कनडीशनल ब्रांचिंग के इस टूटोरियल में आप सबका स्वागत है
इस टूटोरियल के अभ्यास के लिए आपके कंप्यूटर पर साइलैब विंडो को खोलिए
हम साइलैब में दो प्रकार के कनडीशनल कनस्ट्रक्ट्स की चर्चा करेंगे इफ then else इफ देन एल्सकनस्ट्रक्ट की और select केस सिलेक्ट-केस कनडीशनल कनस्ट्रक्ट की
इफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स के समूह को निष्पादित याने के एक्सीक्यूट करने की आज्ञा देगा अगर दी गयी कंडीशन संतुष्ट होती है
उदाहरण के लिए160 एन 42 इफ एन 42 थेन dispथे नंबर इस फोर्टी त्वो इंड यहाँ असाइनमेंट ओपरेटर है जो की वेरीयेबल एन को 42 मान असाइन याने के सौंपता है और इक्वालिटी ओपरेटर है जो की दाहिने और बाहिने साइड के ऑपेरान्ड्स की समानता की जांच करता है
जैसे की इस मामले में एन और 42 और यह बूलीयन में परिणाम देता है
यहाँ पहली लाइन के बाद अल्पविराम एच्छिक है साथ ही थेन कीवर्ड भी एच्छिक है
इसे अल्पविराम या कएरेज रिटर्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है n इंड कीवर्ड इफ कनस्ट्रक्ट को समाप्त करता है
लिपि को एक्सीक्यूट करे तो हमें इस प्रकार परिणाम मिलता है
अब तक हमने देखा है अगर एक कंडीशन सही है तो कैसे एक स्टेटमेंट्स के सेट को एक्सीक्यूट करे
अब हम देखेंगे की अगर कोई कंडिशन गलत है तो कैसे दुसरे स्टेटमेंट्स के सेट को एक्सीक्यूट करे
या फिर चाहे तो जाँच कार सकते है की अगर कोई और कंडिशन संतुष्ट होती है
हम यह एल्से या एलसीफ कीवर्ड के मदद से कर सकते है
हम यहाँ इसे ऐसे करते है
हमने इस उदाहरण में एन को चौवन मान सौंपा है और दोनों ही कनडीशंस के लिए जांच की है
सही कंडिशन के लिए इफ का इस्तेमाल करके और गलत कंडिशन के लिए एल्से का प्रयोग करके
आई विल कट थिस पस्ते इन थे सिलाब कंसोल हित enter आप परिणाम देख सकते है
ध्यान दीजिए ऊपर दिए गए उदाहरण एकाधिक पंक्तियों में है
इन्हें एक पंक्ति में भी लिखा जा सकता है सही अर्धविराम और अल्पविराम के ज़रिये
आई विल कट थिस एंड पस्ते इन थे सिलाब टो एक्जीक्यूट
हित enter सिलेक्ट स्टेटमेंट हमें स्पष्ट और आसान तरीके से कई शाखाओ को जोड़ने की अनुमति देता है
वेरीयेबल में मान के अधीन यह केस कीवर्ड इसी के स्टेटमेंट को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है
यहाँ आवश्यक रूप से कई सारी शाखाएं संभव है
चलिए एक उदाहरण से इसकी कोशिश करते है
हम वेरीयेबल एन को सौ मान सौपते है और बयालीस चौवन यह केसेस तथा एक डिफ़ॉल्ट केस जिसे एल्स द्वारा प्रस्तुत किया है उनको जांचते है
हम इसका परिणाम देख सकते है
हम साइलैब के इस्तेमाल से कनडीशनल ब्रांचिंग के इस टूटोरियल के अंत में आ चुके है
इस टूटोरियल में हमने सिखा इफ else if इफ एल्स इफस्टेटमेंट और सिलेक्ट सिलेक्टस्टेटमेंट
साइलैब में बहुत से फंक्शन्स है जिसका आवरण हम दुसरे टूटोरियल में करेंगे
साइलैब लिंक्स को देखते रहिएगा
साइलैब पर टूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे समर्थित किया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इक्ट के माध्यम से
अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इस टूटोरियल में जुड़े रहने क लिए धन्यवाद नमस्कार